और तीन चार लोग दिख रहे हैं आज बाजू में।

और काफी सारी लोग दिख रहे हैं जो पेट्रोल भरवाने आए हैं।

यहां पर गार्डन दिख रहा है यहां पर ग्रीन कलर का घास दिख रहा है काफी सारी लाइट्स दिख रही है बच्चों की झूले दिख रहे हैं जहां पर बच्चे झूले झूल रहे हैं।

काफी सारे जा रहे हैं लाल और व्हाईट कलर का कलर को किया हुआ हैं आजू बाजू गार्डन है यहां पे बच्चे खेल रहे है।

यहां पे एक पहाड़ दिख रहा है पहाड़ की चोटी पे से काफी सारे--

यहां पर एक रास्ता दिख रहा है रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई है।

लाइट का खंभा दिख रहा है काफी सारे खंभे है आजू बाजू में।

काफी सारे लोग यहां पर खाना खा रहे है काफी सारे लोगों ने सारे--

लड़की ने घागरा पहना हुआ है ऊपर ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है व्हाइट कलर के शूज हैं।

प्लेन का कलर वाइट कलर का है उसपे आगे एक बड़ा सा पंखा लगा हुआ है।

ओ प्लेन में ब्लैक कलर की लाइनस लगी हुई है और वो--

एक जगह पे पार्क किया गया हुआ है प्लेन में तीन टायर लगे हुए है।

इसमें व्हाइट कलर का गद्दा है और रेड कलर की बेडशीट है।

और साइड में एक हॉस्पिटल भी है बैंक में एक इंसान जा रहा है।